यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बड़ी लम्बी लाइन लगी हुई हैं। नज़र आ रही है।

हम ये एक दुकान देख सकते हैं। दुकान के अंदर बहोत सारे फल फ्रूट् रखे हुए दिख रहे हैं।

मट्टी नजर आ रही है। दूर पे हम देख सकते है कि बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहे हैं जोकि पेड़ से भरे हुए नजर आ रहे हैं।

आईना लगा हुआ है जिसमे सब लोग एक-दूसरे को वापस से देख सकते हैं और नीचे मैंट का कलर लाल --

यहाँ हम देख सकते है की पानी की ऊपर एक नाँव दिख रही है। जिसमे एक व्यक्ति बैठ कर उसे चालता हुआ नजर आ रहा है।

रखी गयी है और उसके हाथ में हम देख सकते हैं की अंगूठी --

स्कूटी और साइकिल दिखाई दे रही है और उसके सामने हम देख सकते है कि एक गेट दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसके ऊपर हम देख सकते है कि एक हरा बोर्ड है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा गया है।

तीन लड़कियों ने नीला टी-शर्ट और पैंट पहना हैं और नीचे जूते।